सामने जग और ग्लास है जिसमें पानी रखा हुआ हो सकता है।

और एक पीछे की ओर आप देख सकते कि शेड भी बना हुआ जो ब्राउन कलर का है।

और एक दो प्रदर्शनी झाड़ियों द्वारा इसे सजाया गया है।

दो कमरे दिख रहे हैं।

एक कमरे में देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्राम रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक पानी का जार भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक आदमी सड़क पे चलते हुए दिख रहा है सामने एक बाइक है।

बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं जो इनमें यूनिक बात है कि--

शर्ट गोल्डन कलर की है और जींस ब्लू अथवा ब्लैक कलर की है।

फोटो में एक जूते का दुकान दिख रहा है और उसके सामने भी एक अलग जूते की दुकान दिख रही है।

इसका पानी बहुत ही स्वच्छ देखा जा सकता है।

और अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग की रखी हुई है।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

अगल बगल बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में कुछ ना कुछ उपहार और तोफे हैं।

और उसके उस तरफ बहुत सारे बिल्डिंग्स है जो कि ये सरकारी भवन जैसी लग रही है।

इस फोटो में एक रूम को देखा जा सकता है।

उसके बाहर गेट और ग्रिल लगी हुई है।

नीचे की ओर बहोत सारे शटर्स लगे हुए है।

और सचदेवा नाम का पोस्टर है जिसके बगल में बिल्डिंग भी दिख रही है जिसपे सचदेवा पेंट किया हुआ है।

और दो बच्चे इस गली में खेल रहे हैं एक बच्चे के हाथ पर डंडा है।

इस फोटो में सामने दो दुकाने देखी जा सकती हैं।

और अलग अलग प्रकार की बैरियर बनाई गई है।

यह फोटो एक दुकान का है।

फोटो में एक मंच की फोटो देखी जा सकती है।

वॉल का रंग व्हाइट है और बहुत सारे बल्ब और ऊपर एक फैन लगी हुई है।

इस फोटो में देखा जा सकता है कि एक पार्क का फोटो है जो दो रास्ते जा रही हैं।

इस पार्क की अगल बगल से--